सबसे पहले तो हम देख रहे हैं की यहाँ पे एकठो नया-सा --

एक आदमी कैप पहने हुए हैं जो फोन चला रहा है।

और ढेर सारा लाइट लगा हुआ है लोगों को आकर्षित करने के लिए।

ये तो लोकल प्राइवेट बस है और यहाँ --

पौधा भी लगा हुआ है पेड़ है। बहुत तरह का यहां एक बना हुआ है बिल्डिंग पिंजरे टाइप का फील्ड है |

घास मिट्टी बड़े-बड़े पौधे भी हैं यहाँ पे स्वच्छ हवा भी मिलता होगा।

टूर करके आ रहे हैं और टूर करने के लिए जा भी रहे हैं शायद ।